कुछ स्टेशनरी जैसी लग रही है जिसमें यू सफेद बोर्ड पर लिखा है यू.पी.एस.सी. नोट्स बुक्स --

'' चित्रकला जैसी लग रही है जिसमें एक मैंम खड़ी हुई है सफेद कपड़े पहने हुए चश्मा लगाए बच्चों को ध्यान से देख रही है और उसमें चार लड़कियां खड़ी हैं वो कुछ बना रही हैं चित्र जैसा --''

यह एक शो रूम जैसा लग रहा है जिसमे वी ड् डब्लू ओ यु आर टी एच लिखा हुआ है। इसमें एक गाडी को छेदी जैसा कर रहा है। इसमें का गज कलर की गाड़ी है। इसका कलर भी बहोत अच्छा है।

यह एक आदमी जैसा लग रहा है जिसमे कैप बॉयज लिखा है बॉय लिखा है और --

हाँ इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा हैपेंट हुआ है व्हाइट कलर का और इसमे एक लाइट लगी हुई हैबल्ब और इसके नीचे बच्चे बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं कॉफी रखे हुए --

और एक बाहर वैन सी खड़ी हुई है और एक पेड़ लगा हुआ है और बहोत अच्छा सुंदर दृश्य लग रहा है। देखने में बहोत --